एक सीनरी की तरह दिख रहा है जिसमें बहोत अच्छा बगीचा दिख रहा है। बीचों-बीच पानी दिख रहा है।

यह जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो बिल्डिंग में थ सेकंड फ्लोर तक बना हुआ है। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ।

यह एक शोरूम है जोकि एक क्लॉथ शोरूम है।

ग्रीन ग्रीन घास भी उगी हुई दिख रही है। पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं। बहोत अच्छा दिख रहा है।

उ व बच्चे कुछ-कुछ पेपर से बना रहे हैं कुछ डिजाइन बना रहे हैं।

चार प चार पांच पट्टियां बनी हुई हैं वाइट कलर से। इस पट्टी में दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है।

बहोत ही अच्छा मानो दिख रहा है जोकि ये सीनरी की तरह दिख रहा है।